और ये ए_टी_एम हैं ब्लु कलर की मशीन हुई हैंजिसपे सिल्वर कलर का मेटल हुई हैं और जो पीछे जो वर्नर हैं उसपे ग्रीन कलर से लिखा हुआ हैँ बैंक और व्हाइट कलर का जो पोस्टर हैं ---

और उसमें ब्लैक कलर की दो चेयर रखी हुई हैं सामने से और इसमें प्रोडक्ट रखा हुआ है बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं।

सामने कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए बगल में एक पर्दा टंगा हुआ है कुछ ब्लैक और ब्राउन कलर पर्दा है।

एक ब्लैक कलर की चेयर है जिसमे बगल में एक फर्नीचर है लाइटिंग का और फैन लगा हुआ है लाइटिंग हो रखी है इसमें।

सामने दो ई-रिक्शा खड़े हुए हैं सजे अ नए ई-रिक्शा है पॅकिग बंद है एक रेड कलर का है एक ब्लू कलर का है।